दीवार दिखाई पड़ रही है जो की ग्रे कलर की दिख रही है | यहाँ पर कुछ दलिया रखे हुए दिख रही है जो की ग्रे कलर में दिख रही है सामने एक छोटी सी बच्ची दिखाई पड़ रही है | यहाँ पे अंदर साइड एक आदमी बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है उसका पैर दिखाई पड़ रहा है | यहाँ पर कुर्सी भी रखी हुई है।

जाली लगी हुई है जो की ब्लैक रंग की दिखाई पड़ रही है|यहाँ पर सामने एक शेर दिखाई पड़ रहा है जोकि ब्राउन कलर का है| यहाँ पर सामने लकड़ियां का पटरा जैसा बना हुआ उसके ऊपर में चढ़ा हुआ है | पीछे कुछ पेड़ दिखाई पड़ --

रेल्वे ट्रॅक दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ट्रेन की पटरिया बहुत सारी बनी हुई यहाँ पे सामने फुटपाथ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है।